और नीचे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे--

एक के फाइबर के प्लेट में वह छोटी छोटी मछलियां रखी हुई नजर आ रही है।

और उस से छोटे छोटे लाइटों से सजाए हुए हैं कुछ शैंपू के बोतल रखे हुए हैं।

दो सोफे के चेयर लगे हुए हैं जिसका कलर ब्राउन है।

और किनारे पे बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

एक नाव पलटी की हुई है वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है।

यहां पे बहुत सारे सब्जी रखे हुए हैं।

जो वह ग्रे कलर का टी_शर्ट और क्रीम कलर का पैंट हुआ है रोड पे थोड़े कचरे जमा नजर आ रहे हैं।

दृश्य में एक बस की तस्वीर नजर आ रही है जो बस ब्लू और ग्रे कलर की है।

वहां पे कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है हेलमेट रक्खा हुआ है।

दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो की डबल फ्लोर की है।

पोल दिखाई दे रहा है एक झंडा उ फ़राता हुआ नजर आ रहा है।

वै की कलर आसमानी है बस के नीचे ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है।

दृश्य में एक रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

वहां पे पाइप दिखाई दे रहा है नल लगी हुई है।

दूर का पेड़ दिखाई दे रहा है साइड में बाउंड्री किया हुआ है जिस पर रेलिंग लगे हुए हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

दृश्य में बहुत सारी कार पार्क नजर आ रही है कर के कलर व्हाइट और ग्रे है।

इस दृश्य में टुकटुक की तस्वीर नजर आ रही है।

यहां पे एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है जिस पर सुधा पार्लर लिखा हुआ है वहां पे कुछ व्यक्तियां खड़ी हैं।

इस दृश्य में एक रूम की तस्वीर दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ नजर आ रहा है वहां पे पेड़ वगैरा दिखाई दे रहा है।

एक बेंच पे बिस्किट वगैरह लगा कर के बैठा हुआ है।

ग्रीन कलर की कुछ चांदनी टाइप की टंगी हुई नजर आ रही है।

यहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं पटरा दिखाई दे रहा है।

अभी दिखाई दे रहा है साइड में कुछ बिल्डिंगे नजर आ रही है।

लंबा सा बाज दिखाई दे रहा है।

बाहर ढेर सारा जूता चप्पल खोल हुआ नजर आ रहा है।